और एक दरख्त को वाइट कलर का उन्होंने कलर दिया हुआ है और यहाँ पे हर विंडो को ग्रीन कलर्स दिए हुए हैं।

हमें यहां पे कुछ ऑटो नजर आ रहे हैं जिनका कलर येलो और ब्लैक कलर है।

और दो शॉप में कस्टमर्स ठेहरे हुए है।

इसमें तीन कलर्स के बलूंस लगाए हुए हैं और यहां पे दो लड़कियां नजर आ रही है एक--

एक रेड कलर खा सोफा रखाया हुआ है और उसके साइड में एक विंडो है ग्रीन कलर के उसमें पर्दे लगाए हुए हैं।

हमें एक बड़ी सी बैग नजर आ रही है और उसके साथ हमें तीन चार आदमी भी नजर आ रहे हैं।